पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

मंडप पे फूल लगे हुए है पर्दे लगे हुए हैं |

इ बाजार दिख रहा है यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे है बाइक्स दिख रही है स्कूटर दिख रही हैं ।।

एक गार्डन दिख रहा है पेड़ -पौधे दिखाई दे रहॆ है आसमान दिख रहा है ।

पेड़ हरे कलर के दिख रहे है पाइप दिख रहे है दिवाल दिख रहे हैं ।।